ये तो हम लोग के गांव का स्‍कूल का ही फोटो है जैसे कि गांव गांव में जो स्‍कूल होते है सरकारी स्‍कूल ।

इससे तो यही लग रहा है की बाहर का फोटो है काफी अच्‍छा घर है सुन्‍दर भी लग --

ये तो गाय का फोटो है। जो गाय घास और के कटा हुआ खा रहा है। हम लोग के इधर --

भगवान का यहाँ पर भी बना हुआ है बगल में मंदिर मंदिर टाइप का भी छोटा सा है और सारे लोग लग रहे है जैसे पूजा कर रहा है काफी यहाँ अच्‍छा लग रहा हैं।

सारा सेटिंग से रखा हुआ है काफी ही अच्‍छा लग --

ये जंगल का फोटो फोटो है जो की अच्छा लग रहा है।

अच्‍छा लग रहा है काहे कि बच्‍चा के क्‍लास में तो बस --